इस चित्र में हमें एक बर्थडे पार्टी दिख रही है।

एक बड़ा कांच लगा हुआ है।

नीचे लकड़ी का कारपेट बिछा है।

कुछ खास दिखाई दे रही है।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

सूखे पत्ते नजर आ रहे हैं।

एक पत्थर दिखाइ दे रहा है।

काफी सारे बच्चे खड़े हुए हैं।

भगवान की मूर्ति दिख रही है।

कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं।

सूखी घास नजर आ रही है।

इस चित्र में एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

एक सफेद एक्टिवा खड़ी है।

ऊपर हमें कैलेंडर और कुछ दिख रहा है।

इस चित्र में जुहाल करके ढाबा दिख रहा है।

कुछ बेंचें नज़र आ रही हैं।

बस का रंग काला है।

ऊपर हमे सूरज दिख रहा है।

स्विमिंग पूल में पानी भरा हुआ है।

इस चित्र में हमें एक राखी की दुकान दिख रही है।

राखी और बिंदियाँ टंगी हुई हैं।